ये एक रास्ता है इस पे एक आदमी आ रहा हैं।

फिजिक्स की कोचिंग का नीचे बाहर कीचड़ हो रही है पानी पड़ा हुआ है।

यहाँ पर काम चल रहा है। एक बड़ा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है एक मजदूर काम कर रहा है। बहुत सारे सरिये पड़े हुए हैं। गिट्टी पड़ी हुई हैं।

बाइक खड़ी है कार खड़ी है बहुत सारे लोग उधर काम कर रहे हैं।

अंकल के ऊपर हेलमेट लगाये उसके पास में पोप्युलर फार्मा है।

ये एक तालाब पड़ा है जो बोहोत गंदा हो रहा है इस

ऑटो खड़ा हुआ है दो ऑटो खड़े है एक गांव है कच्चे मकान बने हुए है यहां पर--

ये एक पेड़ दिख रहा है छोटे से पौधे लगे हुए है गुलाब का पेड़ लगा हुआ है एक खम्बा लगा हुआ है जिसके ऊपर लैप लगा हुआ है।

पेड़ लगे हुए है खजूर के पेड़ लगे है उसके पास वायरिंग दिख रही है।

ये एक काल कर सर्विस है इसके नीचे सावमी का बोर्ड लगा हुआ है।

चड्डा बनियान पहने हुए हैं ये पेड़ दिख रहे हैं इन पेड़ों के अलग-अलग कलर है एक बिल्डिंग दिख रही है।